और उसके जो छज्जे निकले हैं उसमें रेड कलर की लाइट लगाई गई है और बाहर में एक आदमी खड़ा है।

उसके ऊपर में एक बोर्ड है पिक और ब्लू कलर से उसके ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से आकृति में लिखी हुई है नीचे में कुछ आदमी लाइन लगाकर खड़े हुए हैं पैसे निकालने के लिए।

और यहां पर एक आदमी और औरत खड़े होकर कुछ बना रहे है।

जो की बहुत खतरनाक जंगली जानवर है पिंजरे का जो कलर है वो काले रंग से रंगी गई है।

और पीछे में घने घने वृक्ष लगाए गए हैं।

यह एक गेराज की इमेज है।

इस इमेज में एक रूम को दिखाया गया है जो कि रूम के जो पीछे की दीवाल है वह सफेद रंग से और छत की दीवाल सफेद रंग से है।

उसके पीछे एक दीवाल है जिसके बगल में एक खिड़की है।

आगे में कुछ गोल्डन से बनाकर लड़कियों के सजा के रखी गई है ब्लॉक टाइप से--

और उस पर्वत के अगल बगल बहोत ही घने घने पेड़ पौधे लगाए हुए हैं।

और उसके पीछे घर बनाया हुआ है।

इमेज में एक गाड़ी के सर्विस सेंटर को दिखाया गया है।

मज में एक ग्राउंड को दिखाया गया है जो की ग्राउंड पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाई हुई है।

और नीचे में पीले रंग की पट्टी है।

और यहां पर कैमरे से तीन चार आदमी फोटो घिन्च रहे हैं।

और यहां पर बच्चों के मनोरंजन के लिए एक मिकी माउस लगाया गया है।

और मिकी माउस के जस्ट सामने में एक दुकान लगाई गई है।

एक शोरूम को दिखाया गया है जोकी शोरूम के बोर्ड के एक साइड में लाल और वाइट रंग से लिखी हुई है।

और उसके बाहर बहुत सारे भीड़ भटके हैं।